ऊपर में प पंखा भी है बल्ब भी जल रही है।

पे बहुत सारे लाइट भी जल रहे हैं।

इधर में भी बहोत सारे गाड़ी चल रहे हैं।

यहां पे कोई कंपटीशन हो रही है यहां पे बहुत सारे घर दिख रहे हैं जो है कपड़ा का है।

ऊपर में एक रस्सी भी टांगी हुई है।

यहां पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और यहां पे बहोत सारे गेंदा के फूल के माला भी पहनें हुए हैं।

यहा पे बहुत सारा चक्का भी है ऊपर में करकट भी है।

एक लड़की है जो मोबाइल में फोटो खींच रही है और एक उधर से भी एक और मर्दाना भी फोटो घिंच रहा है उधर में बहुत पेड़ भी है।

इधर में रोड है एक पाइप एक पाइप भी बहुत बड़ा है।

पे बहुत सारे पंडित लोग हैं जो भगवा कलर के पहने हुए हैं और एकध गो झोला लिए हुए हैं।

यहां पे एक बेड है और यहां पे गोल टाइल्स लगे हुए हैं उधर में भी एक बेड दिख रही है यहां पे एक टेबल भी है।

यहा पर रोड है इधर में डस्टबीन भी है इधर छोटा छोटा घास भी हैं इधर मे भी एक घर है।

पे टाइल्स का टाइल्स भी टाइल्स का रोड भी बना हुआ है।

इधर बहुत सारे पेड़ भी हैं यहां पर बहुत सारे बच्चे लोग भी बैठे हुए।

इसमें टुकड़ा ईंटा भी है और यहां पे बहुत सारे आदमीन भी हैं।

ऊपर में करकट है और ऊपर में लोहा भी बहुत सारा दिख रहा है और इधर दो आदमीन है जो मशीन के कर रहे हैं।

इधर में एक पाइप भी दिख रहा है उधर में एक बास का पेड़ भी दिख रहा है।

नीचे में सीढ़ी भी है इधर एक महाराजा गेट भी लगी हुई है।

शीशा का गेट भी लगा हुआ है जो अलमारी मे है और मच्छर मारने वाला भी टंगा हुआ है।

उसे कप है गिलास भी है प्लेट भी है और यहां पर बहुत सारे चेयर भी दिख रहे हैं।

उधर में एक खिड़की भी दिख रही हैं इधर एक टाइल्स भी लगे हुए हैं और यहां पे बहुत सारे पाया भी हैं उसमें भी टाइल्स लगे हुए हैं।

बहोत सारे आदमीन भी दिख रहे हैं और इधर में भी दरवाजा दिख रहा है।